जैसे कि मैं यहां देख पा रही हूँ ये एक शॉप है और इस शॉप में बहोत सारी चीजें रखी हुई हैं। जैसे कि --

जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूं ये एक पैट्रोल बंक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। लाइन में खड़े हुए हैं।